इंडियल इंडियन मेडिकल हाॅल लिखा हुआ है।

नट बोल्ट देखाई पर रहा है पूरे नथ नट बोल्ट है हम साफ स्पष्ट दिख रहे है।

देख रहे है उजली रंग की गाड़ी लगी हुई है चार पांच गाड़ी लगी हुई है।

बगीचा टाइप का दिखल में हमको अ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है हम देख रहे --